यहाँ का सामान बहुत फेमस है जो की आदमियों के सामग्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ये बहुत फेमस काम है जो कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। सब अपने-अपने काम के लिए फेमस हैं।

और यहाँ पे सब व्यक्ति अपने-अपने स्नान के लिए आते हैं। यहाँ पर अपने अपने बाल-बच्चे परिवार को लेकर आते हैं। इस स्विमिंग पूल की क्वालिटी देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे नहा रहें हैं खेल रहे हैं। यह स्वी --

यह एक बैंक है और इस बैंक का नाम कैनरा बैंक है जो की बहुत ही बढ़िया बैंक है। यहाँ पे आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। यह बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है।